ये कान में लगा रखे हुए है। एक उधर भी आदमी है। देखो ये पानी की बोतल भी रखी हुई है। इधर जग भी रखा हुआ है।

ये दो लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने फोटो खीचाया है और देखो ये देखो यहाँ बुक भी मिलती है किताबे भी मिलती है नाईन्थ की हर हर चीज की और मैथ की इंग्लिस की हर तरह की किताबे --

नाव देख ये नाव है इसमे में लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी भी लग रही है और देखो लोग बहुत है और देखो पानी भी बहोत अच्छा लग रहा है।